ये किसी गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जो कि किसी मकान में बना हुआ है।

जहां पे सारे बर्तन पीतल के बने हुए हैं।

ये किसी गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक टिशू में दो ब्रेड भी रखी हुई दिखाई दे रही है ये लड़का फोटो भी खिंचवा रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा लाल कलर का बोर्ड लगा है जिसपे बहोत सारी चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी बाजार की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक किराने की दुकान बनी हुई है।

कुछ सब्जियां लेकर औरतें फुटपाथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है इनके पीछे की ओर बहोत सारी दुकानें बनी हुई नजर आ रही है।

यहां पे कुछ छोटे बॉयस के कपड़े भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ छोटी गर्ल्स के कपड़े भी टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां बीच में एक छोटी सी टेबिल रखी हुई है जहां पर एक म मग रखा हुआ है और दो पानी की बॉटल्स रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर चार पांच प्लास्टिक की स्टूल्स भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक आदमी भी बैठा हुआ है।

एक नेक्सा के शोरूम के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है यहां पे कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी हलवाई की दुकान दिखाई दे रही है जहां पे एक फ्रिज रखा हुआ है उसके ऊपर एक तराजू रखा हुआ है जो की इलेक्ट्रिक तराजू है।

वी मे जगह की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर कुछ बच्चे बैठकर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है जो की एक बहोत ही बड़ी सी बिल्डिंग है।